इस बिल्डिंग के सामने ढेर सारे पेड़-पौधे भी हैं ।

यह फोटो सर्विस सेंटर के है जहां गाड़ियों से रिलेटेड सारे पार्सल मिलते है। यहाँ कुछ टायर्स कुछ गाड़ियों के इस शॉप में लटकाये गए है।

यह फोटो गाड़ियों के पार्ट्स से संबंधित है जहां पे टू व्हीलर थ्री व्हीलर पार्ट की एक्सेसरिया मिलती है।

यह फोटो बिहार राज्य में स्थित सामुदायिक स्वास्थ केंद्र है यह गोवेर्मेंट सामुदायिक स्वास्थ केंद्र है जिसके अंतर्गत गांव--